जिसके हाथ में एक चादर है और घर के साइड में राइट साइड में बहुत सारा पेड़ है ।

एक स्मार्ट बजार है जहाँ पर बहुत सारा लोग है।

एक महजिद है जिस जो कि बहुत बड़ा है।

एक रोड है और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ मंडपा टू ।

के ऊपर में बहुत सारा बल्ब लगा हुआ है।

उसके आगे इस साइड में जमीन हैं वहीं पे बहुत सारा बच्चा खेल रहा हैं ।

उसके आगे में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है।

सामने में ही लोहा का गेट लगा हुआ हैं।

घर के चारो पट्टी पेड़ है।

केक के ऊपर में गोल और चॉकलेट है और अलग अलग तरह का चॉकलेट है।

एक पेट्रोल पंप है यहां पर एक टेंपू है और टेंपू के पीछे एक आदमी लटका हुआ है।

डब्बा में बहुत सारा सामान है।

ऊपर में भी बहुत सारा सामान टंगा हुआ है।

सब कोई ड्रेस पहना हुआ है।

जिसके बाहर में बहुत सारा समान रखा हुआ है।

पेड़ बहुत बड़ा है और घर के आगे भी पेड़ है और एक सफेद कलर का घर है।

यहां पर दो ईट का बना हुआ है जिसके अंदर में घास है।

आगे में बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है।

और यहां पर ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है।

घर के ऊपर में बहुत सारा रड है निकला हुआ है घर के ऊपर में पिलर वाला।

ये लेस्टुडेंट है। जहाँ पर बहुत सारा सजावट किया गया है।

कुर्सी के ऊपर में टॉवल रखा हुआ है और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो की सफेद कलर का है।

एक छोटा बच्चा है जो कि पीला कलर का टीशर्ट पहना हुआ है।

एक छोटा सा नारियल का पेड़ है राइट साइड में।

और भगवान के पीछे वहां आसन बना हुआ है बैठने का और उसके पीछे मार्बल का दीवाल है।

यहां पर तीन आदमी खड़ा है। और एक बुढ़ा आदमी है।

टेबल है टेबल के ऊपर ही मछली है।